हरी घास दिखाई दे एक टापू दिखाई दे एक लोहे का पाइप दिखाई दे रहा है यहां पर हरी घास यहां पर--

राधा-कृष्णाजी की मूर्ति दिखाई दे रही थी दिया जल रहा है यहा लाल कलर का कार्पेट है इसके ऊपर राधा-कृष्णा हम्म हम्म जी की मूर्ति है।

यो मुकुट लगाए हुए हरे कलर का इसमे मोर दिखाई दे रहा ये और इसमे कृष्णा जी की हात मे बासूरी दिखाई दे रही हैं।

यहां एक मंदिर दिखाई दे रहा है यहां यहां सामने कालीजीकी एक मूर्ति दिखाई दे रही है यहां पर मंदिर का कलर सफेद --

इसपे कलर सफ़ेद कलर का है यहाँ पर बहुत सारी कार रखी हुई है यहाँ सामने एक गार्ड खड़ा हुआ है जिसने नीले कलर की शर्ट और जीन्स पहनी है।

रहे यहा पर इस्टेज पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं यहा कुछ का-प्रो स्कूल का प्रोग्राम हो रहा हैं।

स्टेज दिखाई दे रहा हैं यहाँ पर सफ़ेद और लाल कलर के फुलो से स्टेज डेकोरेशन हो। ये स्टेज का कलर लाल और गोल्डन कलर का है। यहाँ पर गमले रखे हुये जिस मे पेड पौधे लगे हुये है। यहाँ पीछे ऑरेंज कलर का पर्दा दिखाई दे--

यहाँ सामने ने ने झूले दिखाई दे रहे है नाव दिखाई दे रही चददरों का सेट दिखाई दे रहा--

यहाँ सामने हरे हरे गमले दिखाई दे रहे है। यहाँ पर एक खेत है इसमें हमें बहुत सरे पौधे दिखाई--

हरे हरे पत्ती दिखाई दे रही है। उजाला लग रहा है और इन पत्तियों का कलर पीला और हरा है।

यहाँ सामने रोड पर भीड़ दिखाई दे रही है यहाँ बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है यहाँ मंदिर दिखाई दे रहा है जिसका कलर सफ़ेद कलर है यहाँ चद्दर का सेट दिखाई--